बच्चे भी हैं कोई लोग झरने को देख रहे हैं।

ये मस्जिद है इसका ब्लैक काली कलर का दरवाजा है एक लंबा सा यहां पे माइक है एक लंबा साइज में मीनार बने हुए हैं।

ये बस है जिसमें आदमी चल रहा है वो येलो कलर की उसकी जैकेट है और --

क्रॉस रिवर मॉल है ठीक है ये ब्लू इसमें से ब्लू कलर से लिखा हुआ है ग्री कलर की --

ओरिगामी शीट से बना रखा है डॉग बना रखा है काफी सारी चीजें बना रखी हैं।

रेड कलर के चर्च का साइन है वाइट कलर का चर्च है यहां पर ट्रेंड भी लगा --

उसके सामने टेंपो खड़ा हुआ है वाइट कलर का इस पे लड़ियां लटकी हुई है दुकान पे--

बिल्डिंग है जो ब्लू कलर की चीज़े इसमें लगे हुए हैं और ब्राउन वाइट कलर से बना हुआ है।

ये घर है जिसने घर में ही जिसने मूर्तियां लगा रखी है तीन मूर्ती है एक बीच में थोड़ी बड़ी मूर्ति एक आदमी उसको--